हरे -भरे पत्तियाँ दिख रहे है दिन का समय --

और नीचे में छोटा-छोटा पत्थर भी फेकाया हुआ है।

मुझे इस तस्वीर में एक बहुत बड़ा गार्डन दिख रहा है गार्डन बहुत सुन्दर है और फूल अ-- चारो तरफ खिले है और ज़मीन पे छोटा-छोटा--

पानी है और --